हेलमेट लगेले हेय पीला शर्ट पहने आदमी हेलमेट लगेनेबैग लेले हई। इने गैस टांगले उने टिको बहुत--

ने इने आदमी दुगो आदमी उने दुगो आदमी चारगो दुगो बिल्डिंग है है।

लाल कलर से कलर करल गेले लेमे ए में कुछ-कुछ लिखल है ईम ए में चार गो--

एन्ने फिर से इ हई दुगो कल हई ओन्ने फिर ओन्ने पांचगो कल हई।

इने एगो बस है टूरिस्ट लिखल या ओय पर दू चक्का है फिर दू गो पीछे चक्का है।